काफी बड़े-बड़े पेड़ है नीचे पूरा सन्नाटा-सा सफाई बहुत से किया हुआ है।

सभी प्रकार के बुकस मिलते हैं ये मणिपुर चौक में मुज़फ़्फ़रपुर में है ।

एक ग्राउंड्स दिखाई दे रहा है काफी बड़ा है बगल में काफी सारे शॉप्स है उधर गाड़ी भी है।

हुआ है ।

गाड़ी भी इधर खड़ी हुई है ।

आर्ट्स बॉडी फिटनेस एकैडमी है।